और एक ऊपर की ओर घड़ी भी लगी है इलेक्ट्रॉनिक वाली वो वाली भी नॉर्मल वाली भी।

उस जमीन में पत्थर लगा हुआ लंबा लंबा चिकना।

एक बड़ा सा पेड़ भी साइड में है और जमीन में पत्थर लगे हुए हैं।

बहुत सारे फूल भी यहां पे मंदिर में लगे हुए हैं।

अ ऑटो भी यहां पे खड़ी है जिसका कलर है पीला हरा।

ये एक बड़ा सा बस स्टॉप नजर आ रहा है और सामने की ओर एक बिल्डिंग है।

और लोहे की बेरीकेडिंग भी ऊपर की ओर लगी हुई है।

इसके अंदर पिंक वाला बहुत सारा कपड़ा लगा हुआ पीछे की ओर डिजाइन बनी हुई है।

और वहां पे बहोत सारी लाइटें भी डी_जे वाली लगी है।

और पीछे के और एक कपड़ा लटकता हुआ खिड़की के ऊपर नजर आ रहा है।

और स्विच बोर्ड भी दो लगे हुए हैं।

और पानी की बोतले भी किनारे की ओर पड़ी हुई है।

पेट्रोल वाली टंकियां भी इसके अंदर लगी हुई है।

ये एक दुकान है जिसका छत का कलर व्हाइट है।

और उसी के नीचे छत पे वाइट कलर का पेंट हुआ है।

सामने वाले एक बड़ा सा पुतला बना हुआ है पत्थर का।

और अंदर की ओर बहोत सारे गमले भी नजर आ रहे हैं जिसके अंदर छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

और काले कलर की एक कुर्सी भी रखी हुई हैं सामने।

यहां पे छोटी वाली मछलियां नजर आ रही हैं और कुछ बड़ी भी मछलियां हैं।

और सामने की ओर ब्रिज क्रॉस होता हुआ भी नजर आ रहा है।

और यहां पे ठेले भी फल फरूट लगाए हुए बहुत सारे हैं।